यह एक बहोत बड़ी--

यह एक बहोत बड़ी मॉल बन रहा है।

बहुत सारे अंडे दिख रहे हैं और--

की है और एक टैक्टर --

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने--

इसमें बहोत सारे लोहा रखे हैं और बहोत सारे--

यह एक बहोत बड़ी दुकान है दुकान में बहोत सारा--

है और यहां पर बहोत सारे बच्चे बैठे हैं जो पीला ड्रेस --